यहाँ पे कुछ चिप्स के पैकेट दिखाई दे रहें हैं।

यह एक टॉवर भी रखा लगा हुआ है।

पीछे बोहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

उसके सामने फूलों की माला लगी हैं।

यहां पर एक ए.टी.एम. है।

यहाँ पर एक केनरा बैंक का ए.टी.एम. लगा हुआ है।

यहां से दो-तीन पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे घास लगे हुए हैं ।

यहां पे बहुत सारे बाइक खड़े हुए हैं।

यहाँ पे खेती के साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं ।

जिसके पास एस.बी.आई. का बैंक भी है।

यहाँ पर एक एच.दी.एफ.सी. बैंक बना हुआ है ।